हां यहाँ पे मिररस भी लगे हुए बहोत सारे लाइट भी हैं।

ये एक कार है हुंडई का | ये व्हाइट कलर का है और इसमें चार चक्के हैं और यह एक टैक्सी है और इसका नंबर है बी आर जीरो जीरो सेवेन पी बी फोर फोर जीरो थ्री । इसमें चार लाइट हैं दो मिरर्स हैं।

यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है जो कि बोहुत से फूल के पेड़ की पीछे है और पीछे बोहुत और बहोत सारे बड़े-बड़े अम बड़े-बड़े बांस से ये बना हुआ है। ये गेंदे के फूल के पास है और ये व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुए है और एक ब्लू कलर पेंट जीन्स है।

ये एक व्हाइट कलर अ ये वो है और यहाँ पे एक टेबल भी रखा हुआ है।

यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बना रहे हैं। एक बच्चे का हो गया है। एक बच्चा अभी क्ले से कुछ बना रहा है।